रेड और वाइट कलर दिख रहा है सामने एक अंकल खड़े हैं ब्लू शर्ट पहने हुए।

यहां पर एक सैलून है उस सैलून में एक लड़का खड़ा है उसके कपड़ों का रंग ब्राउन है पीछे की तरफ--

दीवार पे गुलाबी और ऑरेंज दिख रहा है एक तरफ फेरोजी कलर है।

ग्रे हैं साइड में व्हाइट और ब्राउन कलर है दूर झाड़ दिख रहा है झाड़ों का रंग हरा है कुछ घास दिख रही है उनका रंग हरा है।

कुछ लाइटें दिख रही हैं वाइट रंग की।